ढेर सारे गमले में फूल पौधे रखे हुए हैं।

कुछ सीढ़ियां टाइप के बना करके वहां पे बहुत सारे छोटे छोटे मूर्तियां रखी हुई है।

रैक बनाकर के बहुत सारे सामान रखे हुए हैं और बीच में एक काउंटर भी बनी हुई है।

रेलिंग भी लगी हुई है उस पे कुछ लाइटें भी दिख रही--

इस दृश्य में एक रूम के अंदर की पिक दिखाई दे रही है जहां पे एक आदमी ड्रिल मशीन से जमीन में छेदा करते हुए नजर आ रहा हैं और--

सैन वगैरा भी रखे हुए दिखाई दे रही है।

अंडर एक पंडाल बना हुआ है और वहां पे बहुत ही ज्यादा भीड़ लगी हुई है।

एक वाइट कलर की पर्दे भी लगी हुई है।

बहुत ही सीलिंग पे लाइटे दिखाई दे रही है।

यह दृश्य में एक गाड़ी की फोटो दिखाई गई है जो व्हाइट कलर की है और हल्की सी ऑरेंज भी है।

साइड में रोड भी नजर आ रहा है।

बैग में झाड़ियां भी दिखाई दे रही हैं।

पर एक बोर्ड भी रखा हुआ है जिस पे एक आदमी का पिक बना है।

सुखा हुआ लकड़ी भी दिखाई दे रहा है।

यह दृश्य में एक स्टेज की फोटो नजर आ रही है जो बहुत ही कलरफुल फूलों से सजाया हुआ है।

इस पे रेड कलर की मैट बिछी हुई है।

बहुत सारे लाइटें भी रखी हुई है और एक सोफा भी रखा हुआ है।

कुछ गाडियाँ पार्क हैं और ऊपर करकट लगे हुए हैं।

ये ढेर सारे सिलेंडर रखे हुए हैं और दो आदमी भी नजर आ रहे हैं।

इसकी दीवारें बैलून से सजाई हुई है बैलून का कलर रेड और व्हाइट है।

सामने कुछ आदमी भी नजर आ रहे हैं।

की दीवार लाइट पिंक और नीचे कत्था कलर का--

इस दृश्य में एक पेट्रोल पंप का पिक दिखाई दे रही है जहां पे एक पेट्रोल पंप है।

बहुत ही रंग बिरगे बाइके भी खड़ी हुई नजर आ रही है।

ये दृश्य में बहुत सारी बाईकें की तस्वीर दिखाई गई है।

ग्रे कलर की चेक वाला कोट पहना है।